यहाँ पर एक जाली है यहाँ पर और रेड कलर का हमें --

एक अ ये इ धन क इधर एक खम्भा भी खड़ा है। कार भी खड़ी है। एक स्कूटर भी खड़ी है। चाय --

हम इस फोटो मे देख पा रहे है के बहुत ही अच्छे फूल है और रंग बिरंगे फूल है और--

यह परचून की दुकान है क्यूआर कोड भी रखा है और काफी फ्रिज भी बड़ा है बड़ा रखा है काफी फ्रिज बड़ा है और कोल्डड्रिंक भी रखी हैं और काफी सामान है बहुत ही अच्छा सामान है।